इस दृश्य के अंदर फल की दुकान दिखाई --

पर्दे लगे हुए हैं लाइट लगी हुई है टी_वी लगी हुई है सोफे सोफा लगा हुआ है बैग रखे हु--

इस दृश्य के अंदर बहुत बड़ा सजावट करी की हुई--

कुछ पौधे वगैराह भी दिखाई दे रही हैं सूरज भी दिखाई दे रहा है।